यह बहोत बड़ा मंदिर है बड़े होने के कारन इसका गेट --

नंदी की मूर्ति है मूर्ति की साइड में गोल-गोल रेलिंग लगा रखी है पास में एक मार्किट बहुत बड़ी है मार्किट --

डोड़ी बनी हुई है डोड़ी वाइट रंग की है यह चौदह इंच डोड़ी है।

बच्चो के कपड़ो का है जहाँ पर ये एक कपड़ो की दुकान है यहाँ पर बच्चो के कपड़े बड़ो के कपड़े--

साइड से पिलर गाड़ कर यहाँ पर जाली लगी हुई नजर आ रही है पेड़ भी लगा रखे हैं।

बस स्टैंड के अंदर यह कुछ कर्मचारी हैं जो सुबह-सुबह के सयम उठ के बस ले जाएंगे काम पे--

पुरानी होने कारन इस के ऊपर काई जम चुकी ही काई जमने के कारन ये काली काली दिखाई दे रही है--

पानी का स्तर ऊँचा होने के कारण यह पानी बोहोत तेजी से फैल रहा हैं।

पर हैं जहां पर पानी भरा हुआ हैं।

यहाँ पर एक नहर से बाहर यह दिखाई दे रहा है।

इस कैफ़े के अंदर एक व्यक्ति रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के ऊपर बैठा हुआ है।

यहाँ पर साइड में खुला एरिया है खुले एरिये में हरे - हरे घास गाड़ी लगी हुई नजर आ रही है।